ये देखो ये राजकीय औद्योगिक स्कूल है। ये सरकारी स्कूल है। इसके सामने --

काफी सारे इस स्कूल में काफी सारे रूम हैं। ये दो मंजी में बना हुआ है। इसका जो रास्ता है दोनों तरफ --

निकने के लिए बीच में थोड़ा सा रास्ता रह गया है बस।